कुछ सामान बोरीओ अन्दर पैक है और कुछ सामान खुला हुआ रखा दिखाई दे रहा है सामने की तरफ भी कुछ सामान--

इस पिचचर में एक सीनाबो नाम से कैफ़े दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है सीनाबो कैफ़े बेकरी --

इस पिक्चर में एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जिसमें चारों तरफ लकड़ी के खाचे बने हुए हैं और कुछ लकड़ी के काउंटर भी बने हुए हैं।

नजर आ रही हे भूसे में कुछ पत्तिया भी डाली हुई हे जो की हरे कलर की हैं।

भेसो का कलर काला हे और इन पर रस्सी भी बंदी हुयी दिखाई हुयी हे।

जोकि लाल कलर से पुती हुई है और ये गोल गोल अ डिजाइन बना हुआ है जिसमे कुछ पेड़ लगे हुए है ।

ऊपर झूमर लगा हुआ है और कुछ पर्दे लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक भगवान् की मूर्ती रखी हुई दिखाई दे रही है जिसके ऊपर कुछ हार भी डले हुए हैं।

और गाड़ी के ऊपर ही ये सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है दो नकली--

लोहे के एंगल से कुछ बना हुआ है और उपर पेड़ लगे हुए है जिनके उपर कुछ फुल भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस पिक्चर मे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमे सामने एक काफी बड़ी दीवार है जिसपर घास का --

स्कूल मे काफी तरीके के कलर किया हुआ है दीवार पर लाल सफेद और हरे कलर का कलर किया हुआ है।

उनके पास ही कुछ सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

पास ही में कुर्सी भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं और लाइटे भी लगी हुई हैं।

जीनो के किनारे पर कुछ गमले रखे हुए हैं जिनके अंदर छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं और फूल भी हैं।

ये एक रोड का चौराहा है जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।

और वो काफी सारे पेड़ पौधे किनारे पर लगे हुए है रोड काफी लंबा और चौड़ा दिखाई दे रहा है।

ये एक काफी बड़ा शादी हॉल का स्टेज बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसपर काफी सारे व्यक्ति--

दो व्यक्ति गेट के बाहर खड़े हुए है और काफी बड़ा सोफ़ा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक रेलवे स्टेशन है जो की बहोत बड़ा है एक आदमी खड़ा हुआ है और पास ही में तिन कुत्ते बेठे हुए दिखाई दे रहे है।

सामने स्टेशन पर एक दुकान भी दिख रही है जिसमें कुछ सामान दिखाई दे रहा है।

ये एक काफी बड़ा घर है जो कि काफी बड़ा नजर आ रहा है जिसमे गोल डिजाईन दिये हुए है जिसपे लाल कलर का कलर --

ये एक व्यायामशाला ओपन जिम के नाम से पार्क हे जो की काफी बड़ा और काफी हरियाली वाला नजर आ रहा है।

लेडिज एक्सोसाइज़ करते हुए दिखाई दे रही है और काफी सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस पिक्चर में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान नज़र आ रहा है जिसमें बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उनके हाथ में बैट और मैच का सामान भी रखा हुआ है।

चारो तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और दूर पर भी कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

ये एक काफी बड़ी शॉप जैसी जगह दिखाई दे रही है जिसमें काफी सारा सामान रखा हुआ है।

और फ्लोवर वाली बेड शीट भी लगी हुई है उम बिस्तर के ऊपर ही एक कंप्युटर भी रखा हुआ है।

और एक ए सी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है सामने दूसरा ए सी भी लगा हुआ है।

और पेड़ों में कुछ गुलाबी कलर के फूल भी दिखाई दे रहे हैं सामने की तरफ कुछ--

ये एक काफी बड़ा हॉस्पिटल है जिसपे एक बोर्ड लगा हुआ है ये एक गर्भ व्यवस्था के दौरान --

स्कूल के बाहर दो तीन बोर्ड भी लगे हुए हैं।

ये एक शूज़ की काफी बड़ी शॉप है जिसका नाम --

इस पिचर में एक भारतीय स्टेट बेंक ग्राहक सेवा किये उसके बैंक लोक सभा केंद्र --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

लोहे की डिजाईन है स्टील वाली कुर्सी में अभी लगी हुई दिखाई दे रही है एक पोछा और बाल्टी भी रखा हुआ है।

इस पिक्चर में कुछ लग्ज़री कार खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

एक कार फुल व्हाईट कलर की है और उसके पीछे दूसरी कार --